इस तस्वीर मे एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो की अहा व्हाइट कलर की है बगल साइट एक और गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे अ इस तस्वीर मे बहुत सारी--

इस तस्वीर मे एक आदमी स्टॅचू बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की पत्थर की मूर्ति है।

सर पे एक पत्थर लिए हुए है और येल्लो और ग्रीन कलर मे कलर किया गया है। बगल साइड मे एक ले एक और एक लड़की खड़ी है जो व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए है आसमान ब्लॅक दिखाई दे रहा है।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

और ब्लॅक कलर का मोटरबाइक दिखाई दे रहा है कोई रेड कलर का मोटरबाइक दिखाई दे रहा है बड़ीसी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।